नमस्कार pyfoam utilities के उपयोग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे: pyfoam utilities के बारे में
pyfoam utilites का कैसे उपयोग करना है
pyfoam utilities का उपयोग करके shocktube केस के लिए डेटा को कैसे रन और प्लोट करना है
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऊबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1404
openfoam वर्जन 230
pyfoam 065 का उपयोग कर रही हूँ
पूर्वआवश्यकतानुसार यूजर को लिनक्स टर्मिनल पर कमांड्स रन करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
और openfoam केस को रन और विश्लेषण करने का कुछ अनुभव होना चहिए
मैं आपको pyfoam utilities के बारे में बताता हूँ
utilities पायथन प्रोग्राम है जो pyfoam के साथ अंतर्निहित होते हैं
प्रत्येक utility के पास एक विशिष्ट फंक्शन होता है
utilities कमांड लाइन से निष्पादित होती हैं
utilites की सूची जिसे tab completion का उपयोग करके देखा जा सकता है
terminal खोलें
utilities की सूची को pyfoam टाइप करके और फिर टैब की को दो बार दबाकर देखा जा सकता है
मैं स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ
प्रत्येक को utility minus help ऑप्शन के साथ निष्पादित किया जा सकता है
यह पता लगाने में हमारी मदद करता है कि यह क्या करता है और इसके ऑप्शंस क्या हैं
हम shock tube केस को रन करने के लिए pyfoam utilities का उपयोग करते हैं
हम – pyfoamrunner dot py pyfoamsampleplot dot py का उपयोग करेंगे
और फिर pyfoam का उपयोग करके आवश्यक डेटा को प्लोट करें
pyfoamrunner dot py को cases रन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है
बाद में उपयोग करने के लिए यह log files भी बनाता है
इस utility का उपयोग पहले सेट अप sampledict से प्राप्त विभिन्न आंकड़ों को प्लोट करने के लिए किया जाता है
shock tube एक उपकरण है जिसका उपयोग सेंसर पर दोहराये और सीधे विस्फोट की तरंगों के लिए किया जाता है
वास्तविक विस्फोट और उनके प्रभाव को मॉडल करने के लिए
इस केस में आयताकार ट्यूब में दाहिनी ओर कम दाब और बाईं तरफ उच्च दाब होता है
दोनों दाब क्षेत्र एक पतले diaphragm से अलग होते हैं
टर्मिनल खोलें compressible solver में rhocentralfoam के लिए पाथ टाइप करें
ls टाइप करें आप shocktube केस देख सकते हैं
टाइप करें cd space shocktube
आप तीन फोल्डर 0 dot org constant और system देख सकते हैं
हमें 0 फाइल को 0 dot org से कॉपी करने की आवश्यकता है तो टाइप करें: cp space minus r space 0 dot org space 0 और एंटर दबाएँ
अब cd space system टाइप करके system फोल्डर पर जाएँ
gedit का उपयोग करके sampledict फाइल खोलें
फाइल के तल में जाएँ और ucomponent0 को हटाएँ
इसके स्थान पर ux uy and uz लिखें rho को भी हटा दें
file को सेव और बंद करें
cd dot dot टाइप करके एक स्तर तक वापस जाएँ
geometry को mesh करने के लिए blockmesh कमांड रन करें
इसके बाद दाब बाउंड्री कंडिशन सेट करने के लिए setfields टाइप करें
अब हम pyfoam utility of pyfoamrunnerpy का उपयोग करेंगे
solver के नाम अर्थात rhocentralfoam के बाद टाइप करें pyfoamrunner dot py space
यह केस रन करता है और postprocessing log बनाता है
टाइप ls करें
हम लॉग फाइल्स को देख सकते हैं जो बन गई हैं
अब sample utility को रन करने के लिए sample टाइप करें
इसके बाद हम pyfoamsampleplot dot py space dot slash space minus minus directory ie dir equal to postprocessing/sets space hyphen info का उपयोग करके विभिन्न time steps के लिए प्लोट कर सकते हैं
यह दिखाएगा कि हमारे पास कौन से फ़ील्ड हैं
फिर टाइप करें: pyfoamsampleplotpy space dot slash space minus minus dir equal to postprocessing/sets space minus minus field equal to capital t space minus minus mode equal to timesinone space vertical pipe space gnuplot
उत्पन्न आउटपुट png फाइल होगी
ls टाइप करें हम बनी हुई png फाइल को देख सकते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने pyfoam utilities के बारे में सीखा
हमने विभिन्न pyfoam utilities के लिए चैक करना भी सीखा
solver को रन करने के लिए pyfoamrunnerpy का उपयोग करना
png फाइल बनाने के लिए pyfoamsampleplot utility का उपयोग करना भी सीखा
कृपया इस फ़ोरम में अपने समयबद्ध प्रश्नों को पोस्ट करें
कृपया इस फोरम में openfoam पर अपने सामान्य प्रश्नों को पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का समन्वय करता है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद